इसमें मुझे एक आदमी हाथ जोड़ा खड़ा दिख रहा है।

इसमें मुझे सलाद लिखा दिख रहा है।

इसमें मुझे एक टेबल फैन रखा दिख रहा है।

इसमें मुझे होटल रूम दिख रहा है।

इसमें मुझे रेल पटरियां दिख रही हैं।

इसमें मुझे कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा है।

इसमें मुझे स्लैब डलते दिख रहा है।

इसमें मुझे टोल टैक्स लगा दिख रहा है।

इसमें मुझे एक छोटी दुकान दिख रही है।

एक बच्चों की रेल गाड़ी बनी दिख रही हैं।

इसमें मुझे गुब्बारे की बोतल बनी दिख रही है।

इसमें मुझे नदी दिख रहीं हैं इसमें मुझे बहोत सारे पेड़ दिख रहें हैं।

इसमें मुझे पन्नियों से बनी दुकानें दिख रहीं हैं।

इसमें मुझे रेल्वे स्टेशन दिख रहा है।

गार्डन में मुझे पौधों से बना मिलीका व्हाइट लिखा दिख रहा है।